यह एक नदी मे दो नाव दिखाई दे रही है नाव मे तीन लोग बैठे हुए एक लड़की बैठी है तथा एक नाव मे दो लोग बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं।

यहाँ एक अम स्टेज पे दो-एक महिला एक आदमी जो की माइक लिए हुए है दोनों बोलते हुए दिखाई दे रहें है।

दो अ आ एक महिला खड़ी हुई तथा दो आदमी दिखाई दे रहे हैं। यहाँ रैत पड़ी हुई दिखाई दे रही मिट्टी पड़ी हुई लगी हुई --

यहाँ तीन लड़के दिखाई दे रहे है एक गड्ढा दिखाई दे रहा है जिसमे ईट रखी हुई दिखाई दे रही है एक लड़के ने तार को पकड़ा हुआ है एक गड्ढे में --

एस.ए.टी.एस.आर.टी सिटी बस दिखाई दे रही है दिखाई दे रहा है ।

आ यहाँ दो लड़के स्टेज पे खड़े हुए हैं तथा यहाँ पर दो आदमी निचे खड़े हुए हैं। एक लड़का बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ चप्पल पड़ी हुई दिखाई दे रही है।

तथा यहाँ कई सारे प्रो-प्रोडक्ट दिखाई दे रहे हैं सीढियाँ दिखाई दे रही है।

तथा यहाँ एक स्लाइड दिखाई दे रही है तथा यहाँ जलवास्य दिखाई दे रहा है।